पीछे में जो बहोत ज्यादा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

यहां हमे जो कुछ फ्लावर्स भी दिखाई दे रहा है उसका पीछे में जो एक गाड़ी भी है वह जो वाइट कलर का है।

आगे में जो दो बुद्धा दिखाई दे रहा है वो जो वाइट कपड़ा पहन के है।

यहां में जो एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।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

और जो व्हाइट कलर में है और ग्रीन कलर में भी दिखाई दे रहा है।

किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है।

पीछे में जो बहोत जरा घर भी दिखाई दे रहे पेर पौधे भी है।

कलर पेपर लोग भी दिखाई दे रहा है बैलून भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी भी चलते हुए दिखाई दे रहा है।

यहाँ मे जो बहुत ज्यादा पुतला दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा पत्थर भी है और इसका कलर भी अलग अलग है।